यहाँ दुकान है दुकान से लोग सामान सब खरीदते हैं।

यह जिम है। जिम में लोग बॉडी बना रहा है।

बोहोत ही अचल नजारा --